सामने वाली लड़की ऐसा लग रहा है डांस कर रही है बाकी दोनों लड़कियाँ लग रही है क्यों भी कुछ समझाने कि कोशिश कर रही है अपने एक नाटक के --